जब ये बरसात होती है तो अपना पंख फेला के एकदम वो कर लेते है या--

ये बहुत ही स्वादिष्ट इसमे खाना परोसा गया है इस थाली में दाल नजर आ रही है खीरा --

ये बहुत ही टेस्टी होती है ये बिकने के लिए तैयार है इसको काट के ये लोग फ्रेश कर के देंगे।

लोग लोग पैदल भी यहाँ से वहाँ जा रहा हैं बहूत परेशानी का आलम है पानी चारों साइड भरा हुआ हैं और पूरा ट्रांसपोर्ट अस्तव्यस्त हुआ पड़ा हैं बहूत ही ज्यादा पानी है।

बहुत ही अच्छा ये रेल है जिस जिसका यो जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाया गया है इससे आप भी ट्रेवल कर सकते हैं।

एक सपोर्ट की दुकान हैं जहा पे बड़मेंटन रैकेट हैं और बहुत सारी बोल वगैरा सब चीज़ें फुटबाल और बैग --

आजु बाजू बहुत सारे पड़े पौधे और रोड जा रही हैं रोड मे टर्निंग हैं और रोडॉ मे जाते वक्त आप ध्यान से चले बहुत ही अच्छा बाकी व्यू हैं।

डोसा दिया गया है खाने के लिए जो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है आप भी जा के रेस्टोरेंट में इसी तरह खाइए ।

बहुत ही ज्यादा इसमें गंदगी हो गई है जिसको साफ करना जरूरी है बाकी ये नदी अच्छी है।